पीछे काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ है और आसमान में काफी तेज चाँद चमक रहा है और काफी सारे बच्चे मैदान में खड़े हैं।

ओर लोग अंदर जाने के लिए तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए --

यह फ़ोटो किसी पार्क की प्रतीत हो रही हैजिसमे सबसे पहले एक --

ओपेन जिम या फिर व्ययामशाला का बोर्ड लगा हुआ है और उसके पीछे कुछ अलग-अलग तरीके के उपकरण दिए गए हैं व्यायाम करने के लिए।

यह फोटो एक मैरिज हॉल की लग रही है और मैरिज हॉल के पीछे एक बड़ा सुन्दर सा घर बना हुआ है। मैरिज हॉल में --

यहाँ एक किताबों की दुकान है जिसका नाम है कार्तिका बुक पैलेस ।

एक फ़ोटो में जाम लगा हुवा है कुछ ओटो है कुछ रिक्शा है बस है एक कार है और भारत का तिरंगा है।